और यह एक बहुत ही सुंदर नजारा है जो प्राकृतिक--

किचन में काफी सुंदर दृश्य देख सकता है।

जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हुआ है।